और बिल्डिंग के अंदर एक मूर्ति दुर्गा मां का है।

बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग आना जाना कर रहा है।

आसमान और नदी के रंग एक जैसे है नीले कलर में।

राइट साइड की बगान में सोलर प्लेट भी रखा हुआ है।

बागान के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी देख सकते हैं।

बच्चे के सामने ये आदमी है।

मौसम अच्छी है और बादल भी दिखाई दे रहा है।

वो बिल्डिंग इनकंप्लीट दिकाने को मिलता है।

रूम के अंदर कुछ ब्राऊन कलर के कुर्सी भी देख सकते हैं।

इसके सामने में एक ग्रीन कलर की प्लेग्राउंड है जो चारों ओर फ्रेम्स बनाया हुआ है।

प्लेग्राउंड के सामने में एक बड़ा सा इनकंप्लीट बिल्डिंग है।

ये तस्वीर में हम दो लंबे लंबे कपड़ों की दुकान देख सकते हैं।

एक ट्रेन भी स्टेशन पर रुकी है।

कुर्सी के पीछे एक पौधा है।

इस तस्वीर में हम एक आलीशान बंगला देख सकते हैं।

सड़क मे कुछ कीचड़ भी है।